और इनके साथ में एक और वर्कर काम कर रहा है।

बहुत सारे लोग बसों का वेट कर रहे है।

और बॉल के साथ खेल रहे हैं।

रोड के साथ में एक और रोड दिख रहा है।

दीवारों में टाइलें लगी हुई हैं।

बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

है बहुत ही सुंदर लग रही है।

और साथ में सलाद काटा हुआ है।

जिस जिसका आगे वाला पार्ट निकाला हुआ--

और पीछे व्यू ओह माय गॉड बहुत ही--

बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है।

यहां पर आप आसानी से बैठ सकते हैं।

रोड में बहोत सारे लोग घूम रहे हैं।

यहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े डंबल --

और बीच में एक मैडम है साड़ी पहेन के--

यहां पर एक बैडमिंटन है जिसकी तारें निकली हुई है और यहां पर इसको ठीक किया जा रहा है।

और यहां पर बहोत सारे जुते भी है।